साइड में भी एक मंदिर बना हुआ दिखाई दे रहा है।

हाल मे पंखे लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। लाइट भी लगी हुई है। ऊपर की छत दिखाई दे रही है।

इस फोटो में मुझे बहोत सारी औरते दिखाइ दे रही हैं। बैठ के पूजा करती हुई दिखाई दे रही हैं।

अ डिवाल (दीवार) पे पोस्टर लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो मे मुझे एक मंदिर बनता हुआ दिखाई दे रहा है।

नीचे बहोत सारे पत्थर डले हुए हैं। खिड़की बनी हुई दिखाई दे रही है।

दरवाजे को गुब्बारो से सजाया गया है।

इस फोटो में मुझे एक सड़क दिखाई दे रही है। सड़क के दोनों साइड --

दीवाल दिखाई दे रही है एक। लाइट दिखाई दे रही है लड़की के पीछे जलती हुई।

इस फोटो में मुझे एक रूम दिखाइ दे रहा हे। इसमें जिम की मशीन रखी हुई दिखाई दे रही हे। एक उसमे पहिये डले हुए दिखाई दे रहे हे।

दरवाजे दिखाई दे रहा हैं। एक आदमी बाहर खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है जिसने लाल कलर के कपड़े पहने हुए हैं। खंबे (खंभे) दिखाई दे रहे हैं।

खंबे (खंभे) लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो में मुझे एक आदमी दिखाई दे रहा है जिसने सिर पे से तौलिया डालकर रखी हुई है। एक आदमी जाता हुआ दिखाई दे रहा है उसने कैप लगाई हुई है।